सामने एक कमरा नजर आ रहा है जिसमें दो दरवाजे दिखाई दे रहे हैं एक खिड़की दिखाई दे रही है एक मटकी दिखाई दे रही है मटकी में लग रहा है पानी भी है।

ये ऐसा लग रहा है जैसे कि कैंपिंग टेंट लगाया हुआ हो और कोई पिकनिक के लिए आया हो और --

काफी बड़ा मैदान लग रहा है इसमें दोब भी घास भी नज़र आ रहा है दूब भी नज़र आ रही है और कुछ लोहे के पाइप भी नज़र आ रहे --

सामने दो मंजिल की बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमें एक फ्लोर तो पूरा दिखाई नहीं दे रहा है ऊपर कांच दिखाई दे रहे हैं नीचे एक फ्लोर है उसके सामने एक स्कूटी एक बाइक खड़ी है।

और सामने सिढीया भी नजर आ रही है यह व्हाइट कलर की दो मंजिले बिल्डिंग के है।

सामने उसके एक बड़ा सा ग्राउंड बना ग्राउंड के अंदर घास भी लगी हुई है और ऐसा प्रतीत हो रही है दो मंजिल बिल्डिंग है कुछ सरकारी आवाज जैसा लग रहा --

और सामने कुछ प्रेयर करने आए हैं जैसे कुछ महिलाएं कुछ बच्चे और कुछ बड़े आदमी भी है जो प्रेयर करके अभी --

सामान भी पड़ा है सामने जो पीले कलर में है यह कोई डेयरी का लग रहा है जैसे कोई घर में डेयरी होती है जैसे लग रहा है यह कोई तस्वीर --

और कुछ कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स भी पड़ी है ये रेड कलर मे ज्यादातर और पीछे ए_सी दिखाई दे रही है ये कोई मेडिकल स्टोर या फिर कोई किराने की दुकान लग रही है।

सामने एक कमरा दिखाई दे रहा है जिसमें काफी जिम के सामान पड़े है जैसे ये लग रहा है कोई जिम का बड़ा सेंटर हो उसके अंदर कुछ जिम के --

अह कसरत करने वाले सामान और सामने डिब्बी भी दिखाई दे रहे है ये व्हाइट कलर की बिल्डिंग है बहुत बड़ी जिसमें जिम के सामान भी पड़े हैं उस --

ये कोई रेस्टोरेंट या कोई बड़ा होटल लग रहा है जिसमें कुछ टेबल पड़ी है कुछ कुर्सियां पड़ी है सामने --

बढ़िया लाइटिंग लगाई रखी है और ऐसे लग रहा है कोई बड़ा फाइव स्टार होटल हो या कोई रेस्टोरेंट हो।

और म्म् काफी बड़ी बड़ी मशीन लग रही हैं और कुछ लड़के पीछे कसरत कर रहे हैं जिम कर रहे हैं।

सामने काफी भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है जिसमें साइकिल और कुछ बाइक दिखाई दे रही है जैसे रेलवे --

लगी है और कुछ कुर्सियां भी लगी हैं वाइट कलर की बड़ी टेबल है और उसके पीछे एक पंखा और एक--

और पाछ पीछे कुछ बिल्डिंग भी दिखाई दे रहीं है और ये ट्रक थोड़ा नीले और पीले कलर का और व्हाइट कलर का है।

और फौजी भाई टिकट काट रहे है और कटवा रहे है और एक बड़ा हॉल है इसमें कुछ पिलर्स भी है और कुछ कांच के बने हुए भी है।

सामने एक बहुत बड़ा कमरा दिखाई दे रहा है जिसमें एक खाट पड़ी है अं माचा पड़ा है और सामने कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये एक बहोत बढ़िया --